बच्चों के खिलौने दिखाई दे रहे हैं जो कुछ मूर्तियां भी दिखाई दे रही है जो चांदी के कलर की जैसी है।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

मुझे इस तस्वीर में एक शिव भोलेनाथ का मंदिर दिखाई दे रहा है इस मंदिर के अंदर मुझे एक नंदी महाराज की मूर्ति दिखाई दे रही है।

और इस मंदिर के आगे बोल्ड भी लगा हुआ है जिसके अंदर कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं मंदिर इस तरह का कुछ नाम दिखाई दे रहा है।

फूल कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं जो उनके पास फिर रहे हैं और पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

बड़े बड़े ट्रक दिखाई दे रहे हैं और एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

एक बड़ी सी गुफा दिखाई दे रही है जो बड़े बड़े पत्थरो से बनी हुई है।

पत्थर की बनी हुई रेलिंग दिखाई दे रही है एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है कुछ बिखरे हुए पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे--

और कुछ व्यक्ति धौले कपड़े पहने हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ महिला भी दिखाई दे रही है।